जिसमें सामने एक एयरोप्लेन खड़ा है और पीछे शीशे का ऑफिस बना हुआ है।

दीवार पर कपड़े भी लटके हुए हैं।

वे तिरंगे का बिल लगा हुआ है।

इसके बाहर बहोत सारे व्यक्ति खड़े हैं।

जिसके बाहर बहुत सारे लोहे के बीम--

व साइड में कुछ सिलेंडर भी हैं।

सामने एक झील बनी हुई है।